यह एक एंट्री गेट है एह एंट्री गेट काफी बड़ा और सुंदर है|

और बड़ी है यह ग्राउंड के चारो दिवाल से --